इसके अलावा एक ऑटो नजर आ रहा है जोकि पीले रंग का है उसके ऊपर भारत का झंडा लगा हुआ है।

यह चित्र एक सैलून का है रिसेप्शन एरिया में सैलून और फैमिली सैलून लिखा गया है।

इस चित्र में बच्चों के लिए खेलने के लिए खिलौने नज़र आ रहे हैं।

पांच से छे गमले भी नज़र आ रहे हैं। इसके लावा लेफ्ट हैंड साइड मे सफेद रंग की --

ऊपर जो है सजावट के लिए एक वायर के ऊपर--

कुछ चिप्स नज़र आ रहे हैं अंकल चिप्स के अलावा लेस भी नज़र आ रहा है।

उसके साथ मे एक बोर्ड भी नजर आ रहा है यहां पर काफी सारे गमले भी नजर आ रहे हैं और--

साइन किया गया है उसके अलावा यहां पर भारत पेट्रोलियम का एक बड़ा--

यहां पर काफी सारे पेड़ है जो की बहोत हरे भरे हैं।

पैसा के साथ में कुछ लकड़ियाँ भी नजर आ रही हैं।

इस तस्वीर में पत्थर से बनाई गई दीवार नजर आ रही है।

पीले रंग का झूला है जिस पे बच्चे खेल रहे हैं।

यहां पर एक ड्रॉवर में नजर आ रहा है।

दो यहां पे लाइट्स जो है वो रिफ्लेक्ट हो रही है।

इस चित्र में काफी सारी गाड़ियां नजर आ रही है।